खेत खलियान लगत बा चारों ओर देखत बानी कुल हरियाली बा कुल पेड़ पहाड़ एकदम घास फूल कुल सब लौकता। बड़ा निक सुंदर पाइप को नीचे दिखता हमके।

फिर अ देखत बानी की कुल कुर्सी ऊर्सी और हरा रंग के कार्पेटो लगल बा अंदरवा।

और पेड़ वेड़ भी पीछे लउकत बा। दिन के समय बा सु एकदम सूरज ढलत ह। बच्चन खेलत हैन् ।